इस फोटो में मुझे एक मॉल दिख रहा है वो मॉल के निचे--

आगे में सुम्मीग पूल है सुम्मीग पूल में बोहत सारी लाइट बढ़ रही है यहां पे उसके ऊपर में भी कुछ होटल टाइप का कुछ नज़र आ रहा है।

और ये आदमी के सामने दो चेयर और है और इसके बगल में डस्टबिन रखा हुआ है ।

इस फोटो में मुझे पार्क टाइप का नज़र आ रहा है ये पार्क बहुत ज्यादा ही बड़े हैं और पार्क में बहुत बड़े बड़े पेड़ सब भी हैं और एक--

इस फोटो में मुझे एक शॉप दिखरा है उस शॉप एम_आई_ओ स्टार सोनी और यहाँ पे एक आदमी साइड में खड़े है और बोहोत बोहोत यहाँ पे पेड़ यहाँ पे --

इस फोटो में मुझे एक घड नज़र आ रहा है और बगल में ब एक पहाड़ टाइप का कुछ नज़र आ रहा है पहाड़ के जस्ट सामने चार ओरत भी है और उसके पीछे एक नदी टाइप का कुछ बना हुआ है और वो जरना टाइप का और बहोत सुन्दर लाग रही है।

इस फोटो में मुझे एक बाइक का शोरूम नज़र आ रहा है वहा पर हीरो की बोहोत साड़ी बाइक लगे हुए है और --

इस फोटो में चार लड़कीये है वो चारो डांस कर रहे--

दो तिन लाइट भी लगे हुए है और एक लड़की--

यूनिवर्सिटी कोचिंग डेवलपमेंट कोर्स हें और यहा पे बोहोत सारे घर रूम टाइप के कुछ हें और वो सब--

बहोत सारे पोस्टर सभी लगे हुए और वहा पे एक टी_वि भी है अन्दर में--

बड़ से एक बोर्ड में कोई मशीन भी लगी हुई है और --

एयरपोट नज़र आ रहा है जस्ट उस एयरपोट बहुत बड़े है और कुछ पार्किंग एरिया में एक एयर फ़ो एयरप्लेन लगा हुआ है और कुछ --

यहा पे बोहोत बनिया है और ये ऐयरप्लैने पार्किंग एरिया में लगा हुआ है ।

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही उसे बिल्डिंग के सामने एक और घर नजर आ रही है उसे घर पे और यहां पर बहोत सारे इसमें कार पार्किंग है पार्किंग एरिया में कार पार्क है एक कार ब्लू कलर की और बाकी कार की कलर ग्रे कलर है।

लगे हुए है और एक कार ब्लैक कलर की है।

और इसमें बोहोत सारी लाइटे यहा पे लगी हुई है जो ब्लू और ग्रेरी और रेड कलर की है ।

इस फोटो में मुझे एक पार्किंग एरिया नज़र आरा है।

इस फोटो में मुझे एक कलब टाइप का कुछ नज़र आरा--

और इस कलब में बोहोत सारे लाइटिंग भी नज़र आ रही है।

और कुछ ऑटो में कुछ आदमी लोग बैठ के आ जा रहे हैं।

बोहोत बड़े बड़े ढाल औ झंडा लगे हुए है और जय श्री राम भी लिखा हुआ है।

और यहा पे मुझे एक कुडसी नज़र आ रही है और मंदिर के बाहर बोहोत सारे चप्पल भी है ।

इस फ़ोटो में मुझे एक बहोत बड़ी दीवाल नज़र आ रही है उस दीवाल के बगल में पेड़ के कुछ डाल सा भी मुझे नज़र आरा और एक बहोत बड़ा पेड़ भी है और छोटा टाइप का कुछ भी है और यहाँ पे बहोत सारे पत्ते गिरे हुए है।

और एक कच्ची पुल पर मैं बहोत सारे आदमी इस पार से उसे पार जा रहे हैं और आदमी लोग--

इस फोटो में मुझे एक मदिर नज़र आ रहे है और वो बैलूनो से सजा हुआ है कुछ येल्लो कलर के बैलून और कुछ बुल्लू कलर के --

कुछ रेड कलर के बैलून और मंदिल के जस्ट बाहर में एक लाइट भी लगा हुआ है।